होटल या घर के बाहर का दृश्य--

सामने कुछ लाइटें लगी हुई है आस पास--

सामने एक दीवाल का फोटो है उस पर लिखा हुआ है खानवल कार इंडस्ट्री ।

दुकान के जहां बहोत सारे प्लास्टिक के कपड़े या कवर लटके हुए हैं।

और यह ऊपर से नीचे तक क पड़े ही कपड़े हैं।

और यहां कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

पार्किंग एरिया और रोड की तस्वीर है।

जिन में बहुत सारी मशीने लगी हुई है।

और खुद्दीयां और कुछ बैटें भी हैं।

यह एक चर्च का दृश्य है जहाँ बहो--

यह फ्लैट है सारे के सारे और बाहर चैनल गेट भी लगा हुआ है।